खड़े हो उतने पानी में रेलिंग दिख रही है एक स्टील की और बोहत सारे लोग बोर्ड में मतलब बोट के बाहर भी खड़े हुए है एक दो बोर्ड में भी है एक साइड खड़े हुए है।

पीछे कु बाउंड्री टाइप की दिख रही है ट्रीस दिखाई दे रही हैकुर्सी भी दिख रहा हैइधर पे और एक गोल-गोल सा कोने पे दिख रहा ऊपर--

और ये पानी में खड़ी है उसके साइड में मिट्टी दिख रही है कोना मिट्टी में नाव का और उस साइड पेड़ दिख रहा है नारियल के और घर बने हुए है बहुत सारे पेड़ लगे हुए है लंबे-लंबे और बहुत सारे लंबे-लंबे पेड़ लगे है बाउंड्री बनी--

ये एक सर्विस सेंटर है करो का जिसमे काम चल रहा हैआगे एक डम डम्पर खुला हुआ है और कारे खड़ी हुई है अलग-अलग कलर की कुछ मशीने भी रखी हुई हैका--